एक लाल रंग के टमाटर है और टमा एक हरा रंग का मिर्ची है मिर्ची है एक प्याज है और आलू है।

र आदमी है बहुत लहसुन है प्याज है और बिस्किट है और बहुत सारे सारे चीज है यहां प्याज है।

और कॉलगेट और माजा स्प्राइट थम सब ये पानी उनी है और बहुत सारे कुरकुरे उरकुरे लगे हुए हैं और देखिए आगे पेर है और --

यहां पे एक बाजार जैसे बहुत सारा बॉल है ब्ल्यू और लाल और हरा और वाइट और हरा और--

एक स्कूल है स्कूल के आगे एक लड़की है और बहुत सारे बच्चे और लड़के जस्ट --

एक हवाई अड्डा हवाई अड्डा में एलोप्लेन है दो तीन चार पांच लगे हुए और उनके पंखे पीले पीले हैं।

अह ग्रीन कलर का लगे हुए हैं और वो जो व्हाइट व्हाइट है ठीक है उम्म दीवाल घेरे हुए हैं।

और झंडे है बहुत सारे रंग-बिरंगी अम्म पंडाल-उंडाल लगे है पौधे-औधे हैं अम्म अम्म टाटी-ऊटी है सब कुछ है तेरह चौदह म --

आसमान है आसमान के नीचे पेड़-पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे मिट्टी है आ पानी है और पेड़ लगे हैं आसमान कितने नीले-नीले छाए हुए है बड़ी मस्त पौधे-औधे हैं बहुत सारी मिट्टी-विट्टी लगे हुए --

और बहुत सारे साइकिल लगे हैं तीन चार और पेर और वो --

एक खड़ा है औ को एक काला है और बहोत सारे पोस्टर ऑरेंज कलर का घर ओर--

और बहोत सारे पत्ते फूल उल से सजाए हुए हैं बहुत मस्त लग रहे हैं गाड़े के पंडा है आके देख लीजिएगा।

और तीन चार टोटो लगे हुए है और ई रिक्शा विक्सा आदमी ओदमी का भीड़ वीड़ बहोत सारे जायदे लगे और स्कूल है उसके ऊपर सर्वीस --

एक ग्राउंड है ग्राउंड के आगे बहोत सारे आगे पीछे आदमी है बहोत सारे दूर तक ग्राउंड है।

एक घर है घर के आगे चार-चक्का चार-चक्का पानी टंकी है पानी टंकी के बाद बहुत सारे घर-उर है घर के आगे लड़की और लड़का है पेड़-पौधे और --

एक दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारे गेम गेम खेलने वाला चीज डाले हुए हैं खिलाना वलोना है बहुत सारे हेलीकोपटेर वेलीकोपटेर ड्रोन व्रोन खेलने वाला है।

और ब्लू कलर के कार्टून में पैक है और वाइट ब्लू वाइट ब्लू सब में पैक ओके गुलाबी ग्रीन हरा और बहुत सारे छाता उता लगाए हुए हैं।

एक साइकिल का दुकान है बहुत सारे साइकिल लगे है साइकिल का भी गाड़ी उड़ी है गाड़ी उड़ी के आगे कितना सारा --

बहुत सारे आदमी लोग कुर्सी कुर्सी बहुत सारे पेर उर है फिर उसके आगे हरे हरे दूभी उभी है बहुत सारे मोर फंग उंख फैलाए हुए हैं और --

एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप के पीछे उसका घर है श्री बा लाजी बालाजी पी एच पी --

एक टैंकर से दो टैंकर तीन टैंकर है और स्कूल है स्कूल के आगे पीछे बहोत सारे आदमी उदमी किरान से उठाया जाता--

एक एजेंसी है एजेंसी के आगे बहुत सारे गैस गुस रखे हुए हैं उसके ऊपर घर बनाया है जो कि भारत बना के फायर ब्रिगेड रखे हुए हैं।